इस पिक्चर मे एक बस दिखाई पड़ रही है | बस येलो और रेड कलर की है | उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है | बस के सामने एक घर बना हुआ है ।

पीछे साइड पत्थर रखे हुए हैं और सामने एक गिटीयो का टीला दिखाई पड़ रहा है | पीछे हरे पेड़ दिखाई पड़ रहे है जो की ब्लैक शैडो मे है ।